अशोक चक्र का चिन्ह है और साइड्स में दो --

दो नारियल का पेड़ है और ये एक झूलने के --

सुंदर लग रहा है व्हाइट कलर का दिख --

सब तालाब के अंदर फेंका हुआ है और साइड्स में बहुत सा --

और ये विदेशियों के साथ फोटो ले रहा --

लग रहा है देखने में रंग-बिरंगा है ये मस्जिद।

वन हर्ष और पेट्रोल बेचतें --